सामने हमे एक हाल दिखाई दे रहा है जहाँ पर बड़ा सा आलमारी लगा हुआ है जो की--

सामने हमें एक शाही ईदगाह दिखा-- अ का पोस्टर का लगा हुआ दिखाई दे रहा है।